उसमें बहुत सारे काले रंग का गाड़ी का टायर रखा हुआ है।

ब्लू टीना का बड़ा सा घर है उसमें खिड़की भी बनाया हुआ है।

बड़े बड़े पेड़ पौधा भी हो गया हुआ है और आसमान भी है।

इस तस्वीर में बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है ब्लू आसमान और सफेद बादल भी हैं।

और बहोत सारे मनुष्य भी खडे होके हे।

और येलो कलर में भी है ऊपर का दीवाल रंग है ग्रीन और व्हाइट उसमें लाइट बल्ब भी लगा --

और खड़े होकर भी है शीशे का दरवाजा है दीवार में टी_वी भी लगाया है।

उसमें खिड़कियां और दरवाजा भी बनाया हुआ है।

बाहर में लंबा सा सीढ़ियां भी हैं बड़े बड़े पेड़ और पौधा भी उगाया हुआ है।

दीवार में शीशा भी लगाया हुआ है और स्विच भी है।

और बड़े बड़े पेड़ पौधा भी है और सफेद आसमान है।

काला दरवाजा है और नीचे में ब्लैक कलर का स्पीकर भी रखा हुआ है।

दुकान में बहुत सारे राखी लटकाया हुआ दिख रहा है जो की रेड पिंक और मैरून कलर में है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा माल दिख रहा है।

और दीवाल का रंग है सफेद सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारा सफेद रंग का गाड़ी रखा हुआ दिख रहा है और एक बाइक भी है।

इस तस्वीर में टोकता से बना हुआ बड़ा सा डोर दिख रहा है।

इस तस्वीर में घर का बाहार दिख रहा है।

बगल में बहुत सारे बिल्डिंग्स भी है।

बड़ा सा मैदान है उनमें छोटे छोटे घास भी उगा हुआ हैं।

बाहर में छोटा छोटा टेबल और चेयर भी रखा हुआ है।

एक बाइक भी रखा हुआ है लाइट पोल भी है और काला आसमान है।

एक बाइक और स्कूटी भी दिख रहा है नीचे में बहुत सारे बम्बू रखा हुआ है और बम्बू से भी बनाया हुआ है।

पड़े हुए मनुष्य के पास ब्लैक कलर का बैग पड़ा हुआ है और मोबाइल फोन --

इस तस्वीर में दो औरतें बैठा हुआ दिख रहा है।

वजन नापने का मशीन भी रखा हुआ है।

ऑन रखा हुआ हैं एक कुर्सी के ऊपर बैग भी रखा है ऊपर में फैन और लाइट भी लगाया हुआ हैं।

पीछे बहोत सारा बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ पौधा दिख रहा है।